पेहने हुए खड़ा है ओर दुकान है जिसके अंदर चिप्स वगैरा रखे हुए है ओर बाहर की तरफ एक --

एक मंदिर नजर आ रहा है जिसके बाहर एक महिला हाथ में फुटबॉल लिए खड़ी है।

खड़े है पीछे की तरफ बिजली की तारे नजर आ रही।

लाल रंग की किताबे नजर आ रही हैं। जिनके ऊपर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाई हुई है। पीछे की तरफ काफी --

एक पार्क नजर आ रहा है। जिसमें काफी हरियाली है तथा एक शेड बनवाया हुआ है। जिसके बाहर काले रंग की --

मदनों सिनेप्लेक्स लिखा हुआ है जोकि लाल रंग से लिखा हुआ है तथा पीछे सफेद तथा लाल रंग की --

तथा उसके ऊपर कुछ पत्ते नजर आ रहे हैं। जंगला काले रंग का है तथा उसमें लोहे की ग्रिल --

तथा लोहे का खंबा लगा हुआ है जिसके पीछे की तरफ रास्ता नजर आ रहा है।

तरफ सीमेंट से बना हुआ फर्श नजर आ रहा है। पीछे की ओर आसमान --

जिस पर हरे रंग के पेड़-पौधे उगे हुए हैं। पीछे की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है।

तीन व्यक्ति किताब की दुकान पर खड़े हैं। एक व्यक्ति ने पीठ पर थेला लगाया हुआ है।

खुला है तथा दाईं तरफ एक सिलेंडर रखा हुआ है और एक बाइक भी नजर --

नीले रंग से बना हुआ स्विमिंग पूल नजर आ रहा है। जिसमें पानी का रंग काला प्रतीत हो रहा है।

लुइस सेल अपटू फिफ्टीन पर्सेन्ट ओफ लिखा हुआ है जिसके साथ ही कांच का दरवाजा लगाया हुअ है।

न्यू केरला होटल वेज एण्ड नॉन-वेज रेस्टोरेंट लिखा हुआ है जिसके साथ ही न्यू केरला --

तथा नीचे का फर्श भी नजर आ रहा है खंबों पर अच्छी तरह से नतकशी की --

भी नजर आ रहा है तता नीचे की ओर काफी व्यक्ति खड़े हैं जिसके साथी ई-रिक्शा भी --

एक व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ नजर आ रहा है उसके साथ ही में --

आ रहे हैं। एक बड़ा सा वृक्ष जोकि हरे रंग का है तथा पीछे की और आसमान भी --

कुछ बच्चे नीले रंग की कमीज तथा लाल तथा पीले रंग के लोवर तथा --

तथा नीचे कुछ ईटों का समूह रखा हुआ है उसके साथ ही में काफी और बिल्डिंग भी नज़र आ रही है।

सारू एस.आर.के. मॉल पैंटालूंस लिखा हुआ है।